एक जंगल दिखाई दे रहा है।

रेड और येलो दोनों तरह का है और गाड़ी का कलर --

लगे हुए हैं और एक बस भी दिखाई दे रही है।

क्लास में बहोत सारे बच्चे बैठे हुए हैं।

यहां पर बहोत अच्छी लाइटिंग और फैन लगाए हुए है।

और वगैरह भी लगाए गए हुए हैं।

भी बना हुआ है फ्लाईओवर पुराने जमाने का--

पार्क में पत्थरों से एक छोटा सा स्विमिंग पूल नाम का बनाया हुआ--

हैं और पराठों की संख्या--